जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक मंदिर है और यहां पर एक देवी जी बैठी हुई हैं इनके ऊपर छत्र भी लगा हुआ है बगल में दो शेर भी बैठे हुए है।

और यहां बीच में भी जगह है।

और अभी इसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी और--

जैसे कि आप देख सकते हैं ये साईं दरबार का कुछ है कैफे है।

मान लो एक होटल है। एक रेस्टोरेंट है। इसके अंदर जाओ तो बहोत सारी चीजें मिलेंगी।

इसके तीन फ्लोर हैं नीचे भी बहुत सारी लोग भग घूम रहे हैं और ऊपर के दो फ्लोर्स पर भी घूम रहे है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बहोत सारे वर्कर्स बहोत मिस्त्री लोग काम कर रहे है।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हॉल टाइप है यहां पर खाने की टेबल्स लगी हुई हैं जैसे यहां पर खाना रखा हुआ है।

यहां से दरवाजा है बैंक ऑफ इंडिया अंदर जाने का।

जैसे की आप देख सकते है यहां पर बहुत ही प्यार डेकोरेशन लग रहा है नीले कलर के और सफेद कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं पूरे में--

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन है और यहां पर बस आई हुई है यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं चेयर्स पर।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक नदी है बहुत बड़ी और यहां पर माय लव नरसी कुछ है यहां पर और यहां तीन भैया लोग जा रहे है।

यहां नीचे हरे भरे हैं मतलब पेड़ भी लगे हुए हैं यहां पर और नीचे भी हरियाली है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक मिठाइयों की दुकान है यहां पर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं सामान भी रखा हुआ है बहुत सारा बट यहां पर मिठाइयां भी रखी हुई हैं चॉकलेट्स भी रखी हुई हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे गुलदस्ते रखे हुए हैं बहुत सारे रखे हुए हैं फ्लावर्स भी लगे हैं फूल भी लगे हुए हैं उनमें।

और यहां पर ना अं नाव है बहोत सारी और हर नाव में दो दो लोग बैठे हुए हैं और पीछे बहोत ही अच्छा हरा भरा--

है और यह पीछे का रास्ता है रानी कमलापति का।

और यहां पर एक हिरण बैठी हुई है।